इस पिक्चर में दिखाया गया राधिका चूड़ी भंडार यहां पर चूड़ी का--

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि--

जोकि रिपेयर वीके जाते हैं यहां पे गेमिंग कंप्यूटर भी मिलते हैं जैसा कि इस बैनर पर लिखा गया है।

इस पिक्चर में दिखाया गया यहां पे कुछ लो--

एक महिला कुछ माइक में बोल रही है और यह बैठ के सुन रहे--

कुछ पेड़ उगे हुए साथ में पीले रंग की कुर्सी भी रखी गई है।

इस पर जो लाल रंग के बैलून भी लगे गए हैं ऊपर लाइटिंग चल रही है और साथ में कुछ इवेंट हो रहा है।

इसमें कुछ काम हो रहा है।

वह एक सामान की रेस्टोरेंट की दुकान है वहां पे कुछ लोग अलग अलग वैरायटी के सामान खरीद र--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

इस पिक्चर में दिखाया गया है यहां पे एक--

के सब्जियां फ्रूट बेच रहा हैं यहां पे--

यह एक कैमरे से फोटो की गई है और साथ में एक औरत भी खड़ी हुई है साइड में इसके पेड़ भी लगाए गए हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया है कि यहा पे अंबुजा सीमेंट के नाम से एक--

घास के पेड़ लगाए गए हैं और एक मंदिर भी नजर आ रहा है जिसमें कुछ लोग--